रस्ते पे दोपहिये गाड़ी से यातायात करते हुऐ लोग नज़र आ रहे हैं।

उ-पू इस उपवन के चारो तरफ छोटे-छोटे पेड़ लगाए गए हैं।

महिला शौचालय की दीवार में महिला का चित्र अंकित है।

शौचालय के ऊपर लिखा गया है सांप्रदायिक शौचालय।

लगता है यह कोई आध्यात्मिक स्थल का तस्वीर है।